यह साइकल ठीक करने की दुकान है। यहां साइकल मोटरसाइकल --

यहां बहोत सुंदर वाटिका दिखाई दे रही है बहोत सारे आदमी भी--

और और गाड़ी भीं नजर आ रहीं हैं उधर थोड़ा थोड़ा देख रहीं हैं।

कंप्यूटर और कुर्सी मेज और यहां पे सीनरी भी बहुत सुंदर सुंदर लगी हुई है।

सारा सामान ऐसे ही बिखरा सा पड़ा है।

यहां थोड़ा अंधेरा सा भी नजर आ रहा है।

लाइटें भी सच्ची हुई हैं बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई--

यहां वाटिका सी नजर आ रही है।

यहां सड़क ठीक होते हुए बहोत बड़ा बोर्ड उपर लगा हुआ है।

बहोत अच्छी भार से सजा रखी है फूल पत्तियों से--

पार्क सा नजर आ रहा है और एक छोटा बच्चा और एक आदमी भी खड़ा है।

आ रहा हैं बड़ा बड़ा दरवाजा सब भी दिखाई--

दो तीन बच्चे और उनकी मम्मी भी नजर आ रही है।

और बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई--

और यहां एक कंपनी से भी नजर आ रही है यहां कुछ टरक ठीक करवाते हुए--

यहां बोहोत से आदमी जा रहे हैं।

यहां सुंदर सुंदर दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

यह मिस्त्री की दुकान नजर आ रही है।

और यहां भीड़ सी भी हो रही है और एक गाड़ी भी नजर आ रही है।